यह एक सड़क का समग्र चित्र है जिसमें से बस ऑटो बाइसिकल --

पूजा करने के लिए छठी मैया का --

इसमें साइड में कांच की क्रोकरी के साथ साथ --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

बिल्डिंग के साइड में मैंदान का चित्र है जिसमें बहौत सारी बाइकें

अध्ययन कर रही हैं तथा साथ ही साथ उनका --

केले रखे हुए हैं फूलगोभी रखी हुई है।

अनानास रखे हुए हैं। आलू रखी हुए हैं। शकरकंदी रखी हुई हैं।

से बिल्डिंगो के ऊपर भी छाया-प्रतिछाया दिखाई दे रही है।

यह एक बिल्डिंग का सामूहिक चित्र है जिसके बाहर ग्रीन कलर की घास बिछी हुई हैं।

जो बिल्डिंग की सोभा को और बढ़ा रही है। इसका बिल्डिंग --

बिल्डिंग के सामने हरी घास बिल्डिंग को और सुन्दर सुशोभित कर रही है क्यूंकि ये --

बहुत सारे बच्चों के टी-शर्ट्स टॉप वगैरा लटक रहे हैं जो कि --

यात्रा के द्वारा बहुत ही सुंदर --